दुकान है --

है पानी के बोतल है वहाँ उ पे रखे --

औ वैसे बहुत सुन्नन दअ वस दिख रहा है।

लाइटे लगा हुआ है हरा है और हरा-भरा पेड़ है।

एक बहुत बड़ा समुन्दर है समुन्दर के किनारे बोटे लगा हुआ है वहां पे --

और सड़क के पीछे से बाउंड्री किया हुआ है।

हरा कलर से बोर्ड लगा हुआ है नि --

एते क हरा भरा पेड़े है ।

पार्क बहुत सुन्दर है उस पार्क में वाटर है।

और राजा लोग का जैन बना के चटनिया भी रहता है सिला --

एक एक के ऊपर रखा हुआ है ।

लेंस के जरिये एक आसमानी साड़ी पहने हुए है ऑरेंज हरा एक हरा पिंक --

एक ब्लैक बड़ा सा बस है ।

और जहा पे ओटू लगा है वहां पे आदमी है शीशा पूरा बंद।

ऊहां पानी के ड्राम रखा हुआ है और टेबुल पे मशीने रखा हुआ है।

तरफ हरा भरा पेड़ हैं लाइन के पोले हैं आसमान --

और यहाँ पर पिंक कलर से चारो तरफ सजा --

एक बहुत बड़ा-बड़ा बिल्डिंग है बहुत सारे बिल्डिंग है पिला --

दुभि भरा हुआ है ये पूरा ब्लैक है वहाँ पे मकाने हैं |

यहाँ पे दीवाल खड़ा हुआ है बड़ा सा दुकाने है बगल मे --

से खिड़कियाँ गेटे भी बंद है टेबुले रखा हुआ है बहुत सारे बाइके रखा हुआ हैं।